इसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए

बहुत सारे यात्री भी है औ --

यहां पे मेला लगा हुआ है।

और बहुत सारे दोकान भी खुले हुए है और बहुत सारे व्यत्कि और भी हैं।

तो एक व्यत्कि मुड़ी में मुरेट्ठा बांधले है।

और ट्रक के लोड कर के --

तीन कटोरा है एक टेबुल है।